यह हीरो शोरूम है यहां ऊपर जाने के लिए लोहे के सीढ़ियां बने हुए हैं।

यहाँ भी कुछ पंडाल टाइप का बनाया गया है।

सीढियां हैं। यह बहुत पहले बनाये गये हैं क्योंकि --

बहुत सारे लम्बे-चौड़े गार्डन भी है गार्डन में --

बैठ कर फोटो घीचाये हैं यह लड़का --